और इसमें हम देख रहे हैं की ये यहां पर बहोत सारा ट्रैफिक भी चल रहा है रोड पर।

देख रहे हैं। इस तस्वीर में हम देख रहे है की यहाँ पर --